गेट दिखाई दे रहा है गेट एक खुला हुआ दिखाई दे रहा है एक बंद दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की रेलिंग दिखाई दे रही है नीचे बहोत सारी सर्किटे दिखाई दे रही है सामने की तरफ एक लड़की भागती हुई दिखाई दे रही है।

कांच का कलर ग्रे कलर का दिखाया जा रहा है सामने के तरफ दो टायर जा रहे है जिनका कलर ब्लैक दिखाया जा रहा है सामने की तरफ एक घर है एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसपर ब्लू कलर का कुछ लिखा हुआ है एक और बोर्ड टंगा हुआ है जो येलो कलर का है।

सामने की तरफ दूकान दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ कलर वाइट है। सामने की तरफ पीछे दिवार दिखाई दे रही है छोटी बाउंड्री

इस पर वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है यह गाड़ी एक खाली जगह पर खड़ी हुई है।